पुराने जमाने का फोटो दिख पा रहा हैं।

और यहाँ पर एक जीआई और जिओ का सिम का --

गाड़ी जाती हुई यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर एक आंटी भी हम देख पा रहे --

देख पा रहे हैं और यहाँ पर हम बहोत अच्छा गार्डन भी हम देख पा रहे हैं।

और साइड में बोहोत सारे सौसेस भी रखे हुए हैं हम देख पा रहे --

और वहाँ पर जिम के बहोत सारे हमें सामान भी दिख रहा है।

और स्कूल के बाहर एक ईंट से बना हुआ गमला भी हम दिख पा रहे हैं।

जो ए.टी.एम. का फोटो खीच रहा --

घर फोटो दिया गया है।

और यहाँ पर पूरा पीला - पीला हम देख पा रहे हैं।

भगवान की ये मूर्ति है और ये एक पथर के ऊपर खड़ी हुई मूर्ति दिख पा रही --

ये शोरूम का नाम है। मारुती सुजुकी शोरूम है।

बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं। दिख पा रहा है।

और ये यूनो बैंक के सामने बहोत सारी गाड़ी देख पर रहे --

यहाँ पर गोल वाली स्लाइड लम्बी वाली स्लाइड और बहोत सारी --

ता है कि स्लाइड ।

हम यहाँ पर एक तार भी जाता हुआ हम देख पा रहे हैं।

हम बड़े खेत भी देख पा रहे हैं और वह --

छत पर लोगों के खड़े हुए मूर्ति भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं।